यह पानी पी रहा है यह व्यक्ति एक--

और इसके अगल बगल रेड कलर के--

और यहां पे एक टोटो भी लगा हुआ है।

दोन दो गेट है दोनों गेट का कलर ब्लू है और यहां पे एक चेयर रखा हुआ है उसका भी कलर ब्लू है और एक --

एक हवाई अड्डा है इसमें एक हवाई जहाज भी लगी हुई है और यहां पे बहोत सारे व्यक्ति--